सड़क पर हल्की गंध की ओर कचरा भी दिखाई दे रहा है।

पीछे की ओर शेल्फ और लिखावट नजर आ रही है।

सामने टेबल पर खाने पीने के बर्तन और पानी की बोतले रखी है आसपास में पौधे और हरियाली से सजावट की गई है।

कुछ लोग खुले परिस्सर में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।

यह जगह शादी या किसी बड़े कार्यक्रम के लिए सजी हुई लगती हैं।

दूर रंग-बिरंगी झूल ले और खेल का सामान नजर आ रहा हैं। घास और पौधों से वातावरण बहुत सुंदर और ताजगी भरा लग रहा हैं।

कुछ बच्चे दीवार को झूलों के पास खेल रहे हैं। चारों तरफ हरियाली और पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

हर एक पर दवाइयां और बेक्ड प्रोडक्ट्स सरीके से सजाये गये है दुकान साफ सुथरी और व्यवस्थित दिखाई दे रही है।

ग्राहकों की सुविधा के लिए काउंटर पर कंप्यूटर भी रखा गया है।

यहां एक काउंटर और कुर्सियां दिखाई दे रही हैं।

सामने की दीवार पर कुछ जानकारी लिखी हुई हैं सीलिंग पर लाइट्स आधुनिक डिजाइन में लगी हुई हैं।

रेस्टोरेंट के सामने कई बाइक और स्कूटर दिखाई दे रहे हैं।

आसपास का वातावरण बहुत शांत और ताजगी भरा है।

यहां पर एन_सी_सी का बोर्ड भी दिखाई दे रहा है।

सामने लाल और काले रंग की सीट वाली मशीन दिखाई दे रही है।

झूले और स्लाइड भी दिखाई दे रही है। कुछ लोग बेंच पर बैठे हुए हैं।

आसपास दुकानों और खाने पीने की जगह का माहौल दिखाई दे रहा है।

कुछ लोग कारों के पास खड़े दिखाई दे रहे है चारों ओर हरे पेड़ और नीला आसमान है।

यह जगह पढ़ाई और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए उपयुक्त लगती है।

यह तस्वीर एक पेट्रोल पंप की है सामने नील और पीले रंग की छत्री बनी हुई है।

पीछे चार मंजिला इमारत है जिसमें कई कमरे और बालकनी बनी हुई है।

वातावरन साफ सुथरा और व्यस्त सड़क का द्रश्य प्रस्तुत कर रहा है।

ऊपर से पानी चट्टानों पर गिरता हुआ दिखाई दे रहा है।

झरने की आवाज और पानी की फुहार फुहार वातावरण को ठंडा बना रही है।

यह जगह स्वच्छ और शांत वातावरण प्रदान करती है।

कुछ छात्रा छात्राएं इधर उधर जाते हुए नजर आ रहे हैं।